चित्र दिखाई दे रहा है पर्दे भी हरे रंग की अच्छे लग रहे हैं।

यहां दो व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक चित्र दिखाई दे रहा है जहां पर बंधन बैंक की शाखा दिखाई दे रही --

लग रहा है जहां पर एक बास्केटबॉल का कोर्ट नजर आ रहा है।

यहां पर पेड़ पौधे बहुत ही अच्छे नज़र आ रहे है।

ये एक सैलून की दुकान है।

जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग अलग उपकरण नजर आ रहे हैं।

जिसका नाम परफेक्ट बत्तीस जैनटल क्लिनिक है यहां पर डेंटल का इलाज किया जाता है।